इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोग गिट्टी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे जंगल भी दिख रहा है कुछ पत्थर भी डले हुए दिख रहे हैं।